ऊपर पसु चल रहे हैं एक पेड़ लगा हुआ है छोटा सा पौ--

हम और उसके नीचे एक चटाई बिछी हुई सामने एक कटोरी रखी हुई है जोकि काले कलर की उसमे एक चम्मच डली हुई है और बगल में भी कुछ चम्मच रखी--

और उसके ऊपर कुछ पेड़ लगे हुए है बगल में भी एक पेड़ की पट्टी दिखाई दे रही जमीन पर रेत सा डला हुआ है और कुछ कचरा भी डला हुआ है कुछ ईंटे --

यह सफ़ेद कलर का है और इसके नीचे एक पेड़ लगा हुआ है उसका रंग हरे कलर का है एक और पेड़ सा लगा हुआ है एक बाउंड्री लगी हुई है इधर के साइड भी कुछ पेड़ लगये हुए हैं।

नीचे सामने कुछ आदमी खड़े हुए हैं एक शटर लगी हुई है की और कुछ --

सामने एक ट्रे में बहोत मछलियां रखी हुई हैं कुछ मछलियों का रस कुछो का खून बह रहा है और एक ट्रे रखी हुई है एक औरत पर्स में से पैसे निकाल रही है ।

दीवार का रंग सफेद है और बगल वाली दीवाल का रंग लाल है फर्स का रंग सफ़ेद है एक मशीन रखी हुई है एक लड़का भी खड़ा हुआ है एक लड़की है जो पीले कलर के कपड़े पहने हुए है।

सामने एक बस रखी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।